से बेह रहा हैं यहां हरे पौधे हैं।

यहां एक सेव है सेव टोकरी में रखी है।

टोकरी का रंग हरा है।

उसके ऊपर नीला रंग है।

कई दरवाजे हैं। दरवाजा का--

यहां कई किताबें रखी हैं।

है कुछ लोग चल रहे हैं।

आदमी नीली पैंट पहने खड़ा है।

जो खूबसूरत लग रही हैं।

अंकल फोटो खिंचवा रहे हैं उनके पीछे हरे पौधे हैं।

यह बहुत बड़ा स्कूल है।